ये एक इधर एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं दिए गए फोटो में सामने की ओर एक खिड़की है।

खन्ने भी हैं और साइड में फूल पौधे भी हैं।

लोग सवार हुए जा रहे हैं ऊपर आसमान की ओर बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं नीचे--

दिए गए फोटो में मेरे को दिख रहा है सामने की ओर--

और देखा जाए तो पीछे की ओर से एक रेलवे लाइन भी निकली जा रही है।

और पैर के पीछे एक दीवाल है दीवाल के पीछे दो मकान भी बिल्डिंगे हैं।

उनका कुछ स्कूल का प्रोग्राम चल रहा है।

यहां पर बहुत सी कुर्सी रखी हैं यहां पे लेडीस भी हैं और जेंस भी हैं।

आस-पास बहुत सी झाड़ियां दिख रही हैं और बहुत से--

ऐसा जान पढ़ा रहा है कि यहां कोई कलश है।

एक या दो मकान जा रहे हैं।